ये एक ऑटो डीलर कंपनी हैं जिसमें अंदाज कंपनी की बैटरी की --

कुछ नाम रखने वाले चीज़े बखार बनायीं गयी हैं। बोहोत बड़ा फ्रेम बोहुत ज्यादा बोहुत कुछ चीज़े रखी हुई हैं।

जिसमें गेंदा का फूल्स हैं और भी बहोत तरीके के फूल्स पिंक ग्रीन येलो टाइप के हैं पीछे कुछ अ- उम्म किसी की इमारते बनी हुई हैं।

उसके बाद यहाँ पे अगल-बगल चेयर्स लगाए गए हैं। गेस्ट को --